ये पुराना पत्थर है यहाँ खुदाई करके बनाया गया है घर के तरह --

मर्करी लगा हुआ है बैलून भी है।

और इधर कुछ टंगा हुआ भी है उ --

खुला हुआ गुफा है अ गु अ बहुत छोटा-छोटा सा रास्ता है।

ये मंदिर है और वोअअ अ गेट है।

सारा टी-शर्ट पहना के व्हाइट कलर का पिन्हा है।

और अ बीच में एक लड़का खड़ा है लाल टी-शर्ट पहना है।

म्म्म एट ए ए.टी.एम. मशीन है।

ला कते काला कलर के मूर्ति है।

और गुन गुंबज बना हुआ है।

रोड पे बहुत सारा टोटो लगा हुआ है।

ईमा ऊधर हरा कलर के भी टोटो --

और गुलाबी कलर का आ पेंट किया हुआ है ऊपर में भी अ छज्जा है।

गुलाबी कलर का पेन्ट किया हुआ है और आगे में बहुत सारा उम्म --